जैसे की आप देख सकते है यहा बड़ा सा मैदान है जिसमे काफी सारे घास उगे हुए है।

जैसे के आप देख सकते है यहा काफी बस खडी हुई है यहा पर ज्यादातर बस का कलर रेड और मरूम है।

और यहा पे लिखा हुआ है यु यहा पे काफी सारे पौधे रखे हुए है।

जैसे की आप देख सकते है यहा एक नदी है छोटी सी यहा पर काफी सारे झाड है और यहा काफी ज्यादा--

और कुछ टेंट काले और हरे कलर के हैं यहां पर एक झाड है और कुछ झाड़ मुरझा चुके हैं यहां पर काफी नोक भी है।

और यहां पर गाड़ी खड़ी हुई है यहां पर एक लाल कलर की गाड़ी है।

मॉडर्न डेअरी और बाहर काफी स्कुटी खडी हुई है यहा पर एक बच्चा भी है और कुछ लोग है।